यहाँ पे फूल भी हैं इधर।

यहाँ पे बहुत सारे कछुए हैं।

और यह जिम का नाम है बॉडी स्टेशन ।

और यह कोलेज का नाम है कोलेज ऑफ़ प्राइमेसी आगरा।

और यहाँ पे कुनरी है गाजर हैं।